यहाँ कॉन्सट्रकशन चल रहा है और कुछ मजदूर काम कर रहे है नीचे जाली बिछी है तार की छड़ की गिट्टी रेत दिख रही है।

लड़कियों ने नीले जीन्स पेहनी है और टॉप पेहनी है।

आसमान दिख रहा है जमीन दिख रही है।

अ बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जोकी सफेद कलर की दिख रही है एक बोर्ड दिख रहा है जो की लाल है लाल पट्टियाँ बनी है एक चैनल गेट दिख रहा है।

पेड़ पौधे दिख रहे है कुछ लंबे और घास दिख रही है।